बस और सभी प्रकार की गाड़ियां खड़ी हुई है कोई बाइक और कुछ लोग खड़े हुए है कोई औरत कोई बच्चे --

ये एक पार्क का दृश्य है इसमें बहोत सारी हरियाली हैं और पारक में एक चेयर रखी हुई है।

इसमें बाबा रामदेव की तस तस्वीर है इसमें अ शिव भोले भंडारी की --

इस शोरूम के पास एक गेट भी है।

और एक हेलमेट पड़ा है और कुछ टेप चकरी भी है इस पर सभी कक्षाओं की बुके मिलती है।

यह एक लाइब्रेरी का वीडियो है लाइब्रेरी के बाहर एक लाइट का खंबा भी है और एक बोर्ड भी लगा हुआ लाइब्रेरी के आस पास पेड़ पौधे भी है और --